पीछे एक इवनेटर दिखाई दे रहा है।

यह कोई मरीन ड्राइव लग रही है।

यह कागज और बॉक्स के द्वारा बनाए हुए--

जहां पर मेडिटेशन वगैरा सिखाया जाता होगा या किया करवाया जाता होगा--

बिल्डिंग पर लाल कलर और शीशे--

जो बाहर का गेट दिखाई दे रहा है।

यह कोई डॉल्स वगैरा की दुकान या गिफ्ट आइटम की दुकान है।

यहां पर छोटी छोटी डॉल्स दिखाई दे रही है जो काफी आकर्षक लग रही है और यह एक गिफ्ट --

यह ए_आई केयर वगेरा दिखाइ दे रहे--

कुछ अं वो हैंडबैग भी है हैंडसेट भी है।

दृश्य दिखा रही है जो छोटी झोपड़ियां--

जहां पर लोग पैसे निकाल निकाल रहे हैं।

जो दूल्हे को रेडी करने के लिए दी जाती है और--

औ यह काफी सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दिया है।

साइड में एक डेस्क है और कुछ पेंटिंग वगैरह दिखाई दे रही है।